इस फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे के अंदर का मतलब भाग दिखाई दे रहा है यहां पर एक--

पर आर_एस_सी_आई_टी का यहां पर चार्ट लगा हुआ है नीचे दरवाजे लगे हुए है।

और सफेद कलर का एक मशीन ही है जो कि यहां पर रेड कलर का कुछ पड़ा है ऊपर कीबोर्ड पड़ा है।